यहाँ एक ग्राउंड नजर आ रहा है। जिसमें लोग कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। एक खंभा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल भी दिखाई दे रही है इस इमेज में।

ग्राउंड नज़र आ रहा है जिसमें एक लड़का पेड़ो को पानी देते हुए नज़र आ रहा है। एक मकान बना हुआ है जिस --

गेट खुला हुआ नजर आ रहा है और सीडी भी दिखाई दे रही है।

यह एक रूम है। जिसमे एक टेबल बनी हुई है टेबल पे कुछ मूर्तियां रखी हुई है वो अलग-अलग पोज में नजर आ रही हैं और उसमे एक एक पेड़ भी बना हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। एक अ दूर जाकर बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े ए खंभें दिखाई दे रहे हैं। एक जीप दिखाई दे रही है और कुछ सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।